भगवान का फोटो भी रखा गया है और बहुत सारा डिब्बा भी रखा गया है और यहां पे शीशा लगाया है।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

यह एक रूम है रूम का दीवार सफेद है रूम में लाइन वाला बोर्ड लगाया गया है।

यहां पर लोहा का सीढ़ी बनाया गया है और इसको नीला रंग से पेंट भी किया गया है।

यहां एक जावा कंप्यूटर सेंटर का ऑफिस है इस रूम का दीवार सफेद है।

और यहां पे बहुत सारा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और पोस्टर भी लगाया गया है।

अंदर में बहुत सारा सामान रखा गया है रूम में कुर्सी भी बहुत सारा रखा गया है और रूम में आदमीन भी दिखाई दे रहे हैं।

वो टेबुल रखा गया है टेबुल के ऊपर मशीन रखा गया है और लैपटॉप भी रखा गया है।

यह एक रोड का दृश्य है रोड में बहुत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है और गाड़ी काला रंग का है।

यह एक जिम करने वाला का रूम है इस रूम का दीवार सफेद है और रूम में बहुत सारा --